एक लाल रंग का थमला है।

बहुत सारी संतरी ब रंग की बोतलें रखी हुई हैं।

बहुत सारे बैग रखे हुए हैं।

और दुकान में बहुत सारे गमले भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक कमरा है।

मोटरसाइकिल की लाल रंग की गद्दी भी है।

और सफेद रंग की टाइल भी लगी हुई है।

में बहुत बड़ा मैदान है।

और उस मैदान में बहोत सारी कच्ची ईंटे लगी हुई हैं।

कुछ लाइटें नीले रंग की भी है कुछ लाइटें लाल रंग की भी हैं।

और कुछ पैंटे भी टंगी हुई है।

इस फोटो में बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं।

कुछ फल पीले रंग के हैं।

एक सफेद रंग का बेड है।

इस फोटो में बहुत सारे व्यक्ति हैं।